इस तसवीर में माला एक छत दीक्षिता आहे यहां पर कंस्ट्रक्शन निर्माण का कार्य जारी है यहां छत में सरिया डाल रहा है।

तस्वीर मे माला बहुतसारी महिलाए दीक्षिता है कुछ महिलाए बैठी है कुछ खड़े है यहा गन्ने खड़े है ईख है बच्चे है।

यहा चर्च मे किसी की शादी हो रही है। सामने एक बोर्ड है। एक माइक है । कुर्सिया लगी है जिन पर लोग बैठे है।

जो की तोतिया जाकेट पहने खड़ा है सबने हेल्मेट पहने हैं वो उन्हें कुछ समझा रहा है।

इस तस्वीर में माला एक कैफे दीक्षिता आहे जिसका नाम है द सिटी कैफे ।

इस तसवीर में माला एक चर्च दीक्षित आहे यहाँ एक झोपड़ी में चर्च बना हुआ है ये झोपड़ी सफेद रंग की है जिनके ऊपर तीन शेड डलें हुए हैं।

इस तसवीर में मला बहुत सारे बच्चे दीक्षित आहे जिन्होने रंग बिरंगी वस्त्र पहने हुए हैं बराबर में चर्च के पादरी--

और मदर खड़ी है और इनको नन्स बोलते है पीछे चर्च हैं जिस पर प्लस का साइन बना हुआ हैं।

और वो बैक साइड से अपनी बॉडी दिखा रहा है यहाँ उसके चप्पल साइड में पड़े है। उसने अपने हाथ से रॉड पकड़ा हुआ है।

एक मेज़ हैं जिस पर नारंगी रंग का कपडा डला हुआ हैं पीछे एक प्लस का साइन हैं जिस पर जिस्स बने हैं।

एस तस्वीर में मला एक सुंदर चर्च दीक्षिता आहे. जिसमे भौत सारे कैंडलस जल रही है। सामने एक मॅट पड़ा है।

तस्वीर में मला एक भगवान की मूर्ति दीक्षित आहे इस मूर्ति को सामने के तरफ लगया गया है और इसकी सजावट रंग बिरंगी गुब्बारों से--

की गयी है हमारे झंडे के रंग केसरिया सफेद और हरा होते है इनि रंगो से यहाँ सजावट की गए है।